बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है।

गाड़ी भी रखी हुई हैं और कच्चा रोड दिख रहा है।

ये कोई दुकान के बाहर का सीन है जहां पर--

जो कि मिलिट्री की ड्रेस पहने हुए है।

ये एक कांच की बिल्डिंग नजर आ रही है।

और बाहर एक गेट भी लगा हुआ है।

लड़के और लड़की भी दिख रहे हैं।

यह कोई शादी का सीन नजर आ रहा है।

कुछ लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।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

एक बोट भी नजर आ रही है।

ये कोई मंदिर का सीन दिख रहा है जो कि छोटा सा मंदिर है।

और काले कलर की बाउंड्री बनी हुई है।

नीचे घासें भी दिखाई दे रही हैं।

कुछ लोग बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं।

एक अंकल ब्लू कलर के कपड़े पहनकर पेट्रोल पंप को देख रहा है।

इसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है सिद्धि विनायक फैमिली रेस्ट्रेंड ढाबा --

सामने घर भी नजर आ रहे हैं।

पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

ये कांच की बनी हुई है।

और लोहे के टेबल और चेयर नजर आ रहे हैं।

होटल का सीन दिख रहा है जहां पर--

ऑफिस का सीन दिख रहा है।

साड़ियों की दुकान दिख रही है जो कि बहुत बड़ी दिख रही है।

कुछ लोग नीचे भी दिख रहे हैं।

बैठने के लिए सीट भी दिख रही है और बच्चों के खेलने के लिए कुछ--

कुछ गाड़ियां भी नजर आ रही हैं कुछ बाइक भी नजर आ रही हैं।